और इसके ऊपर से ट्रेन एक के ऊपर से ट्रेन जाती है दूसरे के ऊपर से गाडी और अन्य वाहन।

साइड में ए.टी.एम. मशीन और पीछे एक मेन गेट है।

और छोटे-छोटे यहाँ पे वॉल पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

ये फोटो एक बुध ग्रह की है।

पेड़ भी है और नीचे बहुत सारी --

अ आदमी उतर रहा है और यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं।

कन्स्ट्रक्शन चल रही है और --

और ए रोड मिट्टी का रोड है ये और जो कि थोड़ा कच्चा भी है।